नीचे की साइड में बहोत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें एक दरी दिखाई दे रही जो ऑरेंज कलर की है।

यहाँ पे नीचे की साइड में तीन चार शटर निकाली गईं हैं और यहाँ पे बीच-बीच में खम्बे बनाए गए हैं और जोकी काफी मोटे-मोटे हें और सीमेंटेड हैं।

ओ सामने की ओर में कुछ घर भी दिखाई दे रहा है जिसमे सफ़ेद कलर और नीला कलर किया गया है और बहोत बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा --

इसमें काला कलर किया गया है सामने की ओर में बहुत बड़ा मैदान पड़ा हुआ है जिसमे से कुछ रस्ताएं गए है।

यहाँ पे बहुत सारे बक्से दिखाई दे रहें हैं जो की कागज के बनाए गए हैं और वो रेक पे रखे गए हैं।

और बहुत बड़ा है जिसमें उपर की साइड में पत्तियाँ लगी गई है और यहाँ पे एक खम्भा बनाया गया है।

यहाँ पे पंखा रखा गया है जिसकी जालियां जो है वो काले कलर से है और पंखिया रेड कलर से है यहाँ बैनर टंगे हुए हैं जिसमें कार छपी हुई हैं।

सामने की और में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहें हैं जिसमें से कुछ लोग गाड़ी से हैं कुछ लोग पैदल हैं।

यहाँ पे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है पेट्रोल पंप जो है नीला कलर और पीला कलर किया गया है नीचे की ओर में बहुत मोटे-मोटे खम्भे दिखाई दे रहे है जो कि काफी मोटे-मोटे और सिमेंटेड बनाए गए है।

यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग दो-तीन मंजिल हैं।